सामने की ओर ऑटो पार्ट्स का दुकान है।

सामने की दुकान में एक न्यू शॉप खुली हुई है।

सामने की ओर एक और घर है।

इसपे वॉलपेपर लगे हुए हैं और बोर्ड्स और है।

एक आदमी वॉलपेपर सेट कर रहा है।

उसमें चार मिस्त्री काम कर रहे हैं।

सामने में दो छोटे छोटे घर हैं।

सामने की ओर टेंपो धुला रहे हैं।

साइड की ओर तीन ठो बैठने वाला बनाया हुआ है।

यह एक दृश्य है यह कहीं का रोड है और मंदिर--

बैलून से सजे हुए है।

यह एक दृश्य है सामने की ओर एक ऑटो लगा हुआ है।

छोटे छोटे घास भी है और एक पाइप है साइड की और एक घर है।

सामने येलो कलर की दीवार है सामने की और गाड़ी लगे हुए हैं।

वे लोग बहुत नाच रहे हैं बहुत सारे लोग हैं।